इस तस्वीर में हमे एक खेत नज़र आ रहा है खेत के साइड में एक घर है ।

इस तस्वीर में हमे एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क के सामने एक सफ़ेद कलर का बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है गेट के ऊपर तीनगो लगी हुई है पार्क के पार्क में चारो तरफ --

अ व्यक्ति दिखाई दे रहे है कुछ महिलाएं है और कुछ पुरुष है सामने से एक महिला आ रही है जिसने काले कलर का बुरखा पेहना ऊपर --

अ खड़े हुए है कुछ महिलाये बैठी हुई हैं कुछ कुछ लड़के खड़े हैं कुछ लड़के बैठे हुए हैं बहुत सारी पुस्तके साइड में रखी हुई हैं ऊपर बहुत सारी लाइट हैं ।

उसके चारो तरफ बहुत बड़े-बड़े पेड़ --

आदम पुते हुए का कलर क्रीम है और सामने एक बड़ा गेट लगा हुआ है जिस --

सफेद कलर से गेट के अन्दर एक देख पा रहे है एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमे --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

और सूरज की किरणे आसमान पर नीले-नीले बिखेर रही है और हमें बहुत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है ।

तस्वीर में हम देख पा रहे है यहां पर हमें एक मस्जिद अ मज़ार दिख रही है ।

मजार के सामने फर्श का कलर सफेद है मजार के ऊपर गुम्बद लगी हुई है जिसका कलर हरा है।

गुम्बद के ऊपर एक मीनार बना हुआ है जिसका कलर --